यहां पर बहुत सारे चेयर्स भी दिख रहे हैं।

यहां पर गाड़ी भी खड़ी है।

यहां पर बहुत बड़ा पेड़ भी है।

यहां एक महेल जैसा दिख रहा है।

और बहुत सारे लोग भी हैं।

जिसमें एक सिंह ज्वेलर्स नाम का एक ज्वेलरी स्टोर है।

और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

यह एक शोरूम जैसा दिख रहा है।

यहां पर कांच का दरवाजा भी है।

यह एक कॉलोनी जैसी दिख रही है।

जिसमें एक घर भी है।

यहां पर दो ब्राउन ब्राउन कलर के--

यहां पर बहुत से लड़कियां डांस कर रही है।